पाछु म संतरा के सादा के अउ हरा के फुग्गा मन टंगाये हे।

बगल में गुलाबी रंग के फुल मन हर खिले हावय जेन ह दिखे म बहुत खुबसूरत लगत थे।

एहा अति सुंदर दिखत हे एमा बहुत ज्यादा लाइट होगे हे तेकर ले एहा कुछ ज्यादा ही चमकत हवै अउ रात के बेरा ए तेकर ले जादा ही दिखत हे।

ए हा स्कूल के लयका मन के लायब्रेरी असन लागत हे।

जी हां बहुत सारा बुक किताब मन हर रखाय हवय जेन ल लइका मन हर पढ़थे।

अब सब लाइन से इहा जात हे अब भीड़ -भड़कम तो होबे ही करहि अब बाहर ला देखकर ही पता चलते हेवे।

पूजा करे वला दर्शियाँ स्थल मा हर कोई ला जाना बहुत ही ज्यादा पसंद होथे।